और यहाँ पे जो है पास में एक दीवाल दिख रही है जोकि नारंगी और पीले रंग से पेंट की गई है।

और साइड में भी पंडाल दिख रहे हैं वहां पे कुछ दुकाने लगी हुई जैसे गुब्बारे की दुकान लगी है।

कुछ जो है इमारत भी दिखाई दे रही है।

पास में एक छोटा-सा गार्डन भी दिख रहा है जिसमें बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है।

और यहां पे कुछ जो है।

यहां पे कुछ पेड़-पौधे भी लगे हुए दिख दिख रहे है।

यहां पे एक जो दुकान है उस वो लकड़ी का दुकान दिख रही है।

यहां पे जो है पुरुष ने जो है शर्ट पहना था सफेद रंग का।

और अंदर की तरफ बोहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है बहार भी पैड-पौधे लगे है और एक सड़क दिख रही है।

इ चित्र में एक इमारत दिख रही है जो कि कार्यालय है।

पीछे की तर इमारत दिखाई दे रही है बड़े-बड़े झाड़ दिखाई दे रहे हैं।

इ चित्र किसी छोटे बैंक का है इसका नाम लिखा है बैंक ऑफ़ बड़ोदा।

और यहां पर जो है।

पुस्तकों की दुकान दिख रही है जिसपे एक बोर्ड भी लगा हुआ है प्रगति बुक सेंटर एक सुदर्शन के नाम से है।

विश्वशय भवन लिखा हुआ है।

और एक ने नीले कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है सभी लोग यहाँ पर किताबें खरीद रहे हैं और यहाँ पे लाइट जलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं ।

और यहां पे जो है एक लड़का झुका हुआ दिखाई दे रहा है।

एक यहां पर एक महिला भी दिख रही है।

यहां पे भी बहुत सारे लोग दिख रहे है अंदर की तरफ जोकि कपड़े की खरीदारी करने आए है और ये कुछ कपड़े जो है यहाँ पे पुतलो को भी पहना कर रखा गया है।

यहाँ पर छोटे-छोटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं कुछ बिजली के खम्बे दिखाई दे रहे हैं ।

इ चित्र में दो मंदिर दिखाई दे रहे है एक छोटा और एक बड़ा।

पास में एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है सामने एक जगह दुकान दिखाई दे रही है जिसका जो है दरवाजा कांच है।

और सामने की तरफ जो व्यक्ति है उसने कुर्ता पाजामा पेहना हुआ है।

जो हे बहार के तरफ जो है।